ऊपर एक बहुत बड़ी दिवार नज़र आ रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपाउंड दिख रहा है और बहुत खूबसूरत गेट दिख रहा है जोकि काले कलर का है।

और एक कुर्सी पे कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है और लाल कलर का बहुत बड़ा घर नज़र आ रहा है और यहाँ पर हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

ऊपर एक पानी का डेम बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की बहुत हि खूबसूरत लग रहा है और पानी की डेम की दिवारो का रंग काला दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पूल दिखाई दे रहे है और एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट में बहुत सारी कांच के दीवारें दिखाई दे रही है और एयरपोर्ट का कलर सफेद नजर आ रहा हैं ।

दो पंखे दिखाई दे रहे है और उसमे सफ़ेद पेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है और खाली मैदान नज़र आ रहा है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है।